ये फैक्ट्री है फैक्ट्री में हमलोग को रोजगार मिलता है।

हमलोग का परिवार से पालन- पोषण होता हैं।

उसी उस नदी का ये घाट है। सीढियां बनी हुई है।

इसको स्कूल में मैडम लोग बताती भी हैं बच्चो को की इस तरीके से बनाइये और मनोरंजन क --

साँप बिच्छू हाथी शेर बकरी भें --

यह खेत फसल काटी जाती है तो वहाँ क अपना शिकार करते। कीड़े-फतिंगे को ये नाहार बनाते हैं।

वहाँ पे देश-विदेश से लोग आते हैं वहाँ देखने दरसन करने बाबा का --

एक चर्च है और यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग अपना यहाँ पे लोग पूजा करते हैं --